साथ में ही यहां पे हमें व्हाइट कलर का आसमान दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें कुछ स्टूडेंट्स दिख रहें--

यहां पर एक स्लाइडिंग एरिया दिख रहा है जिसके ऊपर ब्लैक पेंट नहीं रेड पेंट है।

लाइट्स जली हुई दिखाई दे रही है कुछ बोर्ड ली --

और यहां पर लाइट जली हुई दिख रही है ब्लू कलर की बै--

सामने फूलों वाला पर्दा दिखाई दे रहा है।

एक फूल इसमें रेड कलर का भी दिख रहा है।